दुकान के बाहर हमें बहोत सारी कस्टमर्स भी नजर आ रही है।

वह आदमी अपनी फोटो खींच रहा हैं।

नीचे हमें सफेद रंग की प्लेटें लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

नीचे हमें बहोत पहा पत्थर पड़ी हुई दिख रही है।

तीजी भी बहोत सारी पड़ी हुई है।

देखने से यह तस्वीर हमें किसी कला कैफी की लग रही है।

इस दृश्य में हमें एक बिल्डिंग नजर आ रही हैं।

बस हमें सफेद रंग की नजर आ रही हैं।

इसमें ए_सी और लॉक भी है।

हमें वृक्ष भी दिखाई दे रहें है।